एगो आदमी मूर्ति के पूजा करता मूर्ति के पीछा दीवाल बा दिवाल में पेंट कलवा बहुत अच्छा नारंगी से हरियर से|

ऐतहा बहुत ओरत लोग बा जेके हम गीन नइखे सहत | बहुत जेंट्स लोग बा तहा बइठल बा लोग बहुत अच्छा लागता निचे |

नीचे पानी बा बगल में दीवाल ई कुछो के घेरल बा।